और जिस तार पे गिरा है जहाँ जैसे की यहाँ पे कुछ डब्बा रखा हुआ है जिसमें की कुछ रेड रंग का भरा हुआ है।

और आसमान अच्छा लग रहा है देखने में आसमान में कुछ रंग है रेड कलर येल्लो कलर पिंक कलर जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है यहाँ का बा बादल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ कुछ लोग है ।